एक गेट दिख रहा है उसका आजू बाजू में लाल कलर है।

यहाँ स्टार्स बने हुए हैं स्टार्स साइड मे ब्लैक कार्पेट दिख रहा हुआ--

एक बच्चा दिखाई दे रहा हैं वो पेड़ पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं पेड़ दिखाई दे रहे हैं नी ज़मीन दिखाई दे रही हैं पी आसमान दिखाई दे रहा हैं ।